इस पिचर में हमें तीन दरवाज़े दिख रहे है ये शायद कोई हॉस्पिटल का सेटअप है और यहाँ पे बोहत सारी फोटो दिख एक फोटो में बोहत सारी लोग दिख रहे हैं।

यह एक पहाड़ का दृश्य दिख रहा हैं जहाँ पे आदमी लोग घूमने आ रहे हैं दो तीन आदमी वहाँ पे पैदल चल रहे हैं।

यहाँ एक बिल्डिंग का फोटो दिख रहा है जो के बोहत अच्छा लग रहा है क्योकि उसमें बोहत सारे कलर्स की लाइट जले हुए है।

यह एक मंदिर का दृश्य लग रहा है जो की बहुत अच्छा दिख रहा है मंदिर पहाड़ के ऊपर है और जो पहाड़ का पत्थर है बारिश की बजह से कट कट गए है तो वो बहुत नुकीले लग रहे है।

यह फोटो में दो पिलर जैसा कुछ दिख है और उसके आस पास बहोत बड़-बड़ा मैदान है और उसके सामने ठीक बहोत सारा घांस फूस रखा हुआ है।

और बहोत बड़ा - बड़ा पेड़ है हरा भड़ा पेड़ है और आसमान का रंग बहोत ही सुनेहरा है जो की दिखने में बहोत अच्छा लग रहा है।

ये एक घर दिख रहा है जहाँ पे दो तीन बिल्डिंगे भी सटी हुई है उसके साथ सामने एक पिंक कलर का कुछ दिख रहा है।